ये लोकेशन मौसम अच्छा दिखाई दे रहा है | लोग यहाँ घूमने आते हैं | अभी कोई नहीं है मगर बहुत सुन्दर दिखता है ।

यहाँ पे अभी कोई नहीं है और देख सकते है चारो तरफ पेड़-पौधे ल हरे-हरे है टाइल लगे हुए है।

पेन्सिल पेन कॉपी दिखाई दे रहे हैं ।

ये गणपति बप्पा गणपति बप्पा मौर्य यहाँ देख सकते है पूजा पाठ के बहुत सारे सजावट किये हुए है लड़िया लगी है।

पेड़ है जिसे जीप दे के सूखे-सूखे घास-फूल भी दिखाए दे रहे हैं उधर खेत हैं और ये --

बहुत सुन्दर दिखाई देते लाइट भी पीछे लगे हुए हैं |

जहाँ एक लड़का बैठा हुआ --